इस स्टेज का दर्शय है जहा पर हमे दो औरतों गाती हुई दिखाई दे रही है और हमे एक आदमी तबला बजाता हुआ नज़र आ रहा है यहां पर हमे --

ये पोस्टर भी लगी हुई दिखाई दे रहे है और यहां पर बहुत ही सुन्दर तरीके से साज सजावट देख पा रहे है लाइटें भी अच्छी लगी है।

इस इमेज में हमें एक बस देखने को मिल रहा है जिसमें ऊपर हमें बस का नाम भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है साथ ही हम बाहर में एक आदमी को खड़ा होकर--

यहाँ पर हमे कुछ लोगो के मुह पे मास्क भी पहना हुआ दिखाई दे रहा है देखने मे यह दृश्य अच्छा लग रहा है।

एक कैफे के बाहर का है जहाँ पे हमें दो लड़किया सेल्फी लेती हुई दिखाई दे रही है उनमें से एक के हाथ में हमें मोबाइल भी दिख रहा है।

और हम यहां पर एक लड़के को बाइक से गुजरते हुआ देख पा रहे है। और कैमरे की और गौर से देख रहा है और देखने में यह दर्शय रोमांच लग रहा है।